यह एक लकड़ी का बिस्तर है। जो की काफी बड़ा दिखाई दे रहा है बिस्तर के पीछे दो दरवाजे भी हैं और --

ये एक काफी बड़ी दुकान है जहाँ आदमी बैठकर काम कर रहे हैं। अंदर बोहोत सारा सामान भी रखा है और शटर लगा हुआ है आधा।

और इन्हे हाथ में लिया गया --

डूब रहा है जिसकी चमक ऊपर तक आ रही है। आसपास लोग खड़े हुए हैं कोई साइकिल पे तो कोई पैदल।

यह एक दवाई की दुकान है जिसके दरवाजे काँच के बने हुए हैं। दरवाजो पर बहोत सारे कागज चिपके हुए हैं जिन पर बहोत कुछ लिख रहा हैं।

जहां बोहोत सारी मशीने हैं। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक आदमी बना हुआ है। नीचे का फर्श काले हरे --

यहाँं बहुत सारी मेज और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। हर मेज पर दो से चार कुर्सियाँ हैं। बीच में कुछ काफी भी रखी हुई हैं।

ये एक कॉलेज है जसके बाहर एक बोहोत बड़ा दरवाजा लगा हुआ --

ये अंदर से जिम लग रही है और यहाँ पर बहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं। जिम के दरवाजे काले शीशे के है।